और काफी भीड़ मतलब लाइन लगी हुई है मतलब ए.टी.एम में जाने के लिए ।

लाइन में लगे हुए है पैसे उठाने के लिए बहुत भीड़ है यहां पे।

इसे अब देख पारे मुझे तो नही समझ पा रहा।

यहां पे एक फूल है फूल के बगल में भी और एक फूल है।